एक भी जेंट्स नही दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ लेडीज पूजा पाठ कर रही है और नजारा भी बोहोत ही खूबसूरत है। बोहोत ही बढ़ियां हैं। बोहोत सारे लेडीज हैं। पीपल का पेड़ हैं। बहोत सारे लेडीज हैं यहाँ --

और घुमना चाहिए जो पसंद हो जाए ले लेना चाहिए मॉल में।

देखिये यह भी दूकान है। इसमें किराना का ही दूकान शायद है उपर देखिये चदरा दिया हुआ है खटाल है बहुत सारा कुरकुरे अगड़म-बगड़म खाने वाला चीज़ सब है।

देखिये यह भी कपड़ा का दूकान है यह कपड़ा का दूकान है यहाँ भी लगभग-लगभग में सब कपड़ा मिल जाना चाहिए।